सामने एक मैन रोड है इस मैन रोड के ऊपर काफी भीड़ हो गयी है यहाँ पर एक पोलिस वाला खड़ा हुआ है और उसके सामने एक व्हाइट कलर की बस खड़ी हुई है जो काफी फूल हो गयी है उसके बस के ऊपर तक लोग बैठ गए--